और इसमें पिक्चर बना हुआ है पिज़्ज़ा बर्गर का।

एक दो का दो टो अपने से मछली रखा हुआ है। एक मछली रख रहें हैं एक मछली रखा हुआ है।

एक रोड है फैक्ट्री के बगल में जहाँ पे दो लडके खड़े हैं।

गेट से घेरा हुआ है ब्राउन कलर का गेट फिर ब्राउन कलर का बेंच है बीच में रोड बनाया हुआ है आने-जाने के लिए।

फिर यहाँ पे रेड कलर का लाइनिंग किया गया व्हाइट कलर का है। बीच में से रास्ता निकाला हुआ है आने जाने के लिए। आगे सब--

एक आदमी ठेला से जा रहें हैं। अ यहाँ पे दुकान है बहुत सारा साड़ी का दुकान है कपडा का दुकान है।

दुकान जहाँ पे सिटी पैलेस लिखा हुआ है।

घर है अथी बीच में आने जाने का रास्ता है। ऊपर ही पेड़ है जो फ्लैट से सटा हुआ है झंडा से।

ये एक रोड है बीच में जहाँ पे कैंप लगाया हुआ है। सब ग्रे कलर है।

एक सेकंड वाइफ फॅमिली रेस्टॉरेंट है।

चार पाँच आदमी एक पे खड़ी है। ट्रैन ऑटोमोबाइल लिखा हुआ है नाम इसका।

बाइक लगा हुआ है बाहर में पाँच छे ब्लैक कलर का अपाची है टंकी है इसके ऊपर।

इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कागज वगेरा नीचे फेंका हुआ है।

ग्रीन कलर का पत्ता सब है। बीच में है। जाने का रोड है रास्ता है।

यह फिक्स टाइप का है। बुझाया गया रास्ता है। एक बहुत बड़ा पुतला का बना हुआ है। पेस --

तो फिर उसके बाद फूल वगैरा हैं। उसके बाद उम्म मटर है।